दिख रहा हैऔर गेट के ऊपर कुछ लिखा हुआ फिर दिख रहा है उसे चारों तरफ मकान बनी दिख रहे हैंऔर मोटरसाइकिल दिख रही है।

एक पुलिस थाना दिखाई दे रहा है और इसमें लिखा हुआ भी है सुपरीटेंडेंट ऑफ़ पुलिस ।

और दोनों एक जैसे दिख रहे हैंऔर ऊपर कुछ लिखा हुआ पर दिखाई दे रहा है और अंदर खिड़की लगी हुई दिख रही है और बहुत अच्छा दिख रहा है।

यहाँ मुझे मोटरसाइकिल खड़ी हुई दिखाई दे रही है और कुछ व्यक्ति बैठे खड़े दिखाई देने फिर दिख रही है भीड़ दिख रही है

चारों तरफ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं बहुत अच्छा दिख रहा है और पानी की तरंगे दिखाई दे रही हैं और इसमें मच्छर उच्छर भी पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।